यहाँ पर हम एक शॉप देख रहे है दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है जो व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए है और एक व्यक्ति चश्मा लगाए हुए है और --

जो की व्हाइट शर्ट और पेन्ट पहने हुए है हाथ मे मोबाईल हैं ।

जो की एक लड़की है तीन बॉय्ज़ है एक गर्ल्स हैं।

कुछ व्यक्ति साइड मे खड़े दिखाई दे रहे एक मोटर साइकिल भी दिख रही है और उस पर एक बोर्ड लगा जिसमे अमर ज्योति--

यहाँ पर हम देख रहे हैं की बहुत से व्यक्ति लेडिस दिखाई दे रहे हैं साइड में एक टेंट लगा हुआ है वहाँ पर भी बहुत से व्यक्ति की भीड़ दिख रही हैं ।